दुकान के ऊपर बोर्ड लगा रखा है एयरटेल पेमेंट बैंक --

यह दृश्य एक मैरिज हॉल का है जहाँ मैरिज हॉल के अंदर एक--

दुकान का नाम फैब वॉश ड्राइक्लीनर्स रखा गया है और--

पास दो ट्रक खड़े हुए हैं और वे--

और यह है राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत है।

यह दृश्य एक दुकान का है और यह एक फूलों की दुकान है।

दुकान के अंदर कुछ बर्तन रखी हुई दिखई दे रहे है।

यह दृश्य एक कंपनी के अंदर का है जहाँ कंपनी के अन्न अंदर--

और वे सभी सामान --

अवयवस्थित है अव्यवस्था में रखे गए हैं और सभी सामान--

यहाँ पर लिख रखा है श्री सर्वमंगला देवी मंदिर।

यह दृश्य एक वेयरहाउस का है जहाँ पर एक लड़का --

यह दृश्य एक कंस्ट्रक्शन साइड का है जहाँ --

यह दृश्य किसी जागरण--

जागरण के अंदर भगवानों की मूर्तियाँ रखी हुई है जिनमें शिवाजी --

चिट्ठी डालने का बॉक्स रखा गया है और --

यहाँ एक व्यक्ति ने एक पेड़ से फल तोड़ा है और यह एक--